मुझे इस फोटो में बहोत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है।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

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक कटोरा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में प्लाई दिखाई दे रही है मुझे --

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी रोडे दिखाई--

मुझे इस फोटो में एक खंडहर दिखाई दे रहा है।